एक बैन खड़ी है और कूड़ेदान वाली गाड़ी है। एक पेड़ है। पीछे बिल्डिंग ईमारत है।

मिट्टी का बॉक्स है। जैसे वाइट की बिल्डिंग है। है दो खड़ी हैं।

और कुछ लाइटे लगी हैं और कुर्सी खड़े बैठे हैं। कुछ लोग खड़े हैं। उम और चप्पल पहना है।

बैलून लगाया है। सब बाइक का शोरूम है जिसमें है फिर फूल की फूल पर माला है।